मार्केट छे मोबाइल के शॉप लागल छे जंगल झार से सजायाने छे ए पत्ता उता से पस मतलब पावन अवन करे पावे कुछू पूजा उजा आदमी सब बहुत छे।

एक नाई एगो मर्दाना के बाल काटी बना रहल छै।

उधर साइड में भी गाछी ई साइड में भी गाछी इधर --